इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक शॉप के बाहर की है।

इस तस्वीर मे जो फोटो है ये एक दुकान की है जिसमे एक टेबल है जिसके ऊपर एक कपड़ा बिछा हुआ है।

खेत के चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

बहोत सारे खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे है।

इस तस्वीर में जो फोटो यह एक दुकान की फोटो है उसे बहुत सारे सामान रखे हुए है रंग बिरंगे समान हैं।

खनिज न्यास रायपुर लिखा हुआ है सर संरक्षण मंडल छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है।